ए मशीन देखे में काला रंग का लग रहा है अच्छा लग रहा है। एक्सरसाइज इससे होता है वजन भी कम होता है इससे। अच्छा लग रहा है।

ऊपर हरा रंग का क्या चीज है समझ में नहीं आ रहा है। ये मट्टी है मट्टी पे हरा घास है। पीछे देवाल है अच्छा लग रह है देखने में।

ये सरकारी स्‍कूल लगता है पीला रंग का स्‍कूल हैं।

किराना का दुकान है चॉकलेट बिस्‍कुट धरा हुआ है बगल में अंडा भी धरा हुआ है।

ये अ डॉक्‍टर का रास्‍ता गया हुआ है अच्‍छा लग रहा है देखने में आगे ये मट्टी का घेरा सब है।

बेलून सब से सजा हुआ है।

क्रिस्चियन बा का मूर्ति है। पीछे जाली लगा हुआ है।

देखने में अच्छा लग रहा है। ये पानी कहाँ से गिर रहा है ये तो नहीं पता लेकिन निचे पहाड़ी इलाका लगता है।

यहाँ से पैसा निकासी भी होता है। ए.टी.एम. का मशीन है देखने में अच्छा लग रहा है। वाइट रंग का मशीन है हरा रंग का --

खुल जाएगा | ये सीेमेंट का है बना हुआ रूम |

ये कॉलेज है यहाँ स्‍कूल है ये तो समझ में नही आ रहा है बीच में रोड है घास भी उगा हुआ है पीछे गाछ-वृक्ष है।

लड़‍का है या लड़‍की का शादी है य‍ह तो नहीं पता शादी हो रहा है।